ऊपर की और डंडे की सहायता से और कई सारे सामान लटकाए हुएं हैं।

यह एक सामूहिक पार्क है यहां पर अलग अलग उम्र के व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

यहां पर अलग अलग प्रकार के यंत्र रखे हुए है।

मगरमच्छ बहुत ही बड़ा है।

यहां पर क्रिश्चियन समाज को दर्शाया गया है।

कुछ लोग यहां पर मोमबत्तियां जला रहे हैं एवं कुछ लोग अंदर की ओर खड़े हैं।

ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई कार्यक्रम है।

इन पर अलग अलग प्रकार की कलाएं की गई है।

देख कर यह प्रतीत होता है कि यह किसी कुम्हार की दुकान --

देख कर ऐसा प्रतीत होता यह किसी घर की इमारतें तैयार की जा रही है।

यह पूरी प्रक्रिया नहीं की गई है यहां पर कुछ मजदूर कार्यरत हैं।

यह किसी कारखाने का दृश्य है यहां पर कुछ लोग काम कर रहे हैं।

यहां पर विशेषतर दो रंगों की बोरियां रखी है जिनमें से एक सफेद है और एक पीले रंग की है।

यहां नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाई गई हुई है।

बगल में एक टावर लगा हुआ है जिससे कई सारे तारें निकली हुई है।

पुल के अगल बगल कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

यहां पर बिजली से चलने वाली वाहनों को भेजा जाएगा।

यह कारखाने के आगे का दृश्य है यहां पर दो व्यक्ति टाइल्स को एक लाइन में रख रहे हैं।

यहां पर और भी टाइल्स रखी गई है।

व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल तथा उसके पीठ पर एक बैग टंगी हुई है।

पीछे उन सबों का मास्टर इन सबों की वीडियो बना रहा हैं।

यह कोई नर्सरी का दृश्य है जहां पर एक व्यक्ति फूलों के आगे अपनी तस्वीर ले रहा है।

व्यक्ति ने एक मुद्रित शर्ट पहनी है नर्सरी में और कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ऊपर एक शिक्षक सभी को पढ़ा रहे हैं।

यहां पर दो डॉक्टर हैं जो जानवर का इलाज कर रहे हैं साथ ही के टेबल पर कई सारी दवाएं रखी गई है जो इन जानवर के इलाज के लिए प्रयुक्त होती है।

इनमें से कई लोग बुर्जुग हैं तथा कई लोग व्यस्क हैं।

के आगे कुछ गाड़ियां लगी हुई है।

इसके आगे एक गाड़ी पे एक आदमी बैठा हुआ है।

आगे एक छतरी स्टैंड है और कुछ स्टेयर्स है।

यहां पर एक आदमी अपनी साइकिल पर कुछ चीज़ें बेच रहा है।

और मौसम बहुत अच्छा हो रहा--

बगल के खाने में छोटे छोटे चीजों को रखा गया है।

आगे की ओर दो बसें लगी हुई है।

व्यक्ति आगे की ओर मुंह करके बैठा हुआ है।

और इसपे पेंट किया हुआ है।

देख कर लग रहा यह किसी वस्तु पर रखी हुई है।

यह एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड है।

यहां पर बच्चे फुटबॉल खेल रहें हैं।

कुछ बच्चे साइड में बैठे हुए हैं।

बच्चों ने रंग बिरंगी के टी शर्ट पहने हुए हैं।

यहां पर एक नन बच्चों को क्राफ्टिंग सिखा रही हैं जिसमें पेपर से कुछ क्राफ्ट किया जा रहा हैं।

छे इच्छा पूर्वक इस क्राफ्ट को सीख रहे हैं।

यह एक पार्क का दृश्य है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अलग अलग प्रकार के झूलों पर खेल रहे हैं।

एक बूढी औरत अपने हाथ में झूला लेकर चल रही है।

इसके पीछे एक बिल्डिंग है देखकर लगता यह किसी स्कूल का पार्क है।

उसके पीछे स्कूल है साइड मे कुछ पेड़ लगे हुए है।

ऊपर बहुत सारे बिल्डिंगे बनी हुई है।

देख कर लगता है यह कोई छोटी सी दुकान है जिसके अंदर ये सारे वस्तुएं बनाई गई हो।

कुछ लोग इस निर्माण कार्य को कर रहे हैं।

यहां के सारे पत्थर टूट गए हैं एवं इंटे बिखर गई है।

यह किसी डेयरी का दृश्य है यहां पर दूध से बनने वाली सभी चीजों का विनिमय होता है।

डेयरी के आगे में कई सारी वाहने लगीं हुईं हैं।

कुछ लोग अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ लोग बाहर की ओर आ रहे हैं।

यह किसी कार्यक्रम की तस्वीर है यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं।

कुछ लोग बड़े से बने हुए स्टेज पर हैं तथा कुछ लोग आगे की ओर खुली मैदान में हैं।

स्टेज के बगल में एक लाल कारपेट बिछाया गया है।

देख कर ऐसा लग रहा है यह कोई पौराणिक मंदिर है।

यहां पर कई सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे है।

मंदिर का परिसर बहुत ही अच्छा है।

कई सारे लड़कियां योग के आसन में बैठी हुई हैं।

सड़क के दोनों बगल खाली मैदान है।

इसके आगे की ओर एक छोटा सा समतल पठार है।

जिसके ऊपर कुछ लोग चलते हुए दिख रहें हैं।

यहां पर किसी कार्यकम के लिए इंतजाम किए गए हैं।

लगता है किसी बड़े कार्यक्रम के लिए इसे सजाया गया है।

इंतजाम को देखकर लगता है कि यह किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए है।

इसमें कई सारे स्टील के ग्लासों का उपयोग किया गया है।

ताब इस तरह से रखी गयी है की लोगों को खरीदने मे असानी हो --

कुछ लोग यह देख कर बहुत आनंद हो रहे हैं।

यहां पर तीन व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं।

पीछे की ओर एक बेड लगी हुई है।

यहां पर कई सारी महिलाएं एक तस्वीर के चारों तरफ खड़ी हुई है।

महिलाओं ने सफेद रंग की साड़ी पहनी है एवं मुंह पर मास्क लगाए हुए है।

सभी के हाथ में मोमबत्ती है।

देखकर लग रहा है कि यह कोई हॉल है जिसे कुछ लोग किसी कार्यक्रम के लिए सज़ा रहे हैं।

हॉल के आगे में एक सीढ़ी रखी गई है।

यह एक पार्क है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं यहां पर दो बच्चे फिसलन पट्टी पर एक दूसरे के विपरीत में बैठे हैं।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

झूले के बगल में एक सीढ़ी है।

गाड़ियों के विपरीत भाग में एक फूलों का बगीचा है।

कुछ लोग यहां की तस्वीर ले रहे हैं।

यह किसी कारखाने के अंदर का दृश्य है जहां पर कुछ व्य क्ति एक ही रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

ये लोग किसी यंत्र का निरक्षण करते हुए मालूम पड़ रहे हैं।

मैदान में कई सारी बोलें इधर उधर पड़ी हुई है।

खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं।

बैंक के बगल में एक डाकघर है कुछ लोग डाकघर भी आए हुए हैं।

कुछ लोग इस सड़क पर दिखाई दे रहे हैं एवं बहुत सारे वाहन भी यहां पे लगे हुए हैं।